यह एक हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा बहुत ही बड़े हैं यहाँ एक हवाई जहाज लैंड किए हुए हैं।

यह एक बाजार है यह बाजार बहुत भीड़-भाड़ लगता है यहाँ बहुत सारी लोग आए हुए है।

यहाँ लोग शादी करने आते है यहाँ भाड़े पर इस प्लेस को दिया जा --

बहुत दूर-दूर से ट्रेन पकड़ने के लिए लोग आते हैं यह प्लेटफॉर्म काफी अच्छा --

यह एक रूम है यह रूम बहुत ही सजावट किये हुए हैं ।

इस रूम में एक परिवार भी रहते है जो खाना के लिए प्लेट टेबुल पर रखे हुए है।

यह एक मैदान है इस मैदान में काफी प्यारी खेत बनाए गए हैं

यहाँ एक गैरेज भी है बगल में एक टायर की दुकान है वह सीएट टायर है।